और इसके चारों तरफ से लगभग.

बहुत तालाब बड़ा है दिख रहा देखने से और उसके .

कहीं पे घर जैसा भी स्ट्रक्चर बना हुआ है.

फ़ोन स्लप्स रखे है।

इस पिक्चर में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कैस्ट्रोल कंपनी का जो है.

हम्म मतलब एक स्टोर रूम बोल सकते है वेयर हाउस --

जहां पे कैस्ट्रोल का सारा मटेरियल रखा है.

कि बाहर से लोहे का जो है ग्रिल .

और उसके भी अंदर जो है एक बहुत सा.

अच्छा मकान दिखाई दे रहा है मकान नहीं बोल सकते.

कोई लैपटॉप का दुकान से लिया गया पिक्चर है.

और उसके आसपास जो है आदमी भी दिखाई दे रहे है और--

इस पिक्चर मेंजैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि.

कोई चर्च से लिया गया पिक्चर है यहां के चर्च के आगे जो है बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

जीसस का एक बड़ा सा जो है.

जो कि इस पिक्चर से हम लोग देख पा रहे हैं.

एक फ़ास्ट फ़ूड का जो ठेला है उसका पिक्चर .

इसमें कि बहुत सारे केक लगे हुए हैं जो कि.

बहुत ही वैरायटी के केक रखे हुए हैं यहां पे.

इसमें कि दिखाया गया है कि बहुत सारे आदमी जो है.

इस पिक्चर में हम साफ-साफ देख पा रहे हैं कि ये.

दुकान से लिया गया है जिसमें कि बहुत सारे वैरायटी के खिलौने को दिखाया गया है।

इस पिक्चर में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि.

लिया गया है जो कि वैल्यू एंड वैरायटी इसका फुल फॉर्म जो कि आगे में लिखा हुआ लगा हुआ है पोस्टर

जो की बहोत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है।

इसके बाहर जो है कुछ गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में जैस कि हम लोग देख पा रहे हैं कि.

कॉलेज का जो है बिल्डिंग हल्का-हल्का दिखाई दे रहा है.

एक पहाड़ दिखाई दे रहा पहाड़ का गुफा--

कुछ अंदर भी बैठे दिखाई दे रहे हैं और कुछ बाहर भी ऊपर--

इस पिक्चर में जैसे की हम लोग देख पा रहें हैं कि--

ये तालाब जो है उसके चारों ओर बहुत सारे प्लांट दिखाई दे रहे हैं.

जो कि सारी बाइक पार्किंग के मूड में खड़ी है.

इस पिक्चर में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि--

उस पे कोई आदमी भी बैठा नजर आ रहा है.

इस पिक्चर में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं.

देख पा रहे हैं कि यह पिक्चर जो है कोई स्कूल या कॉलेज से लिया गया पिक्चर है.

जिसमें कि साइड में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी साइकिलें जो है.

मशीन लेने के लिए आए हुए हैं नजर आ रहे हैं.

और ये रेस्टोरेंट का नाम जो हम सामने देख पा रहे हैं.

इस पिक्चर में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं की --

कस्टमर दिखाई दे रहे हैं और अपने पसंद पसंद का सामान जो है सेलेक्ट करते हुए नजर आ रहे--

और इसमें देखा जा रहा कि इसके चारो तरफ जो है--

बहुत सारी जीन्स कपड़े रखे हुए हैं जो कि अलमारी में रखे हुए नजर आ रहे हैं.

इसमें कि बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है और ये डेकोरेशन जो है--

वो कस्टमर जो है जिसको दुकानदार अपना प्रोडक्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं.

जैसा कि इस फोटो से हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो पिक्चर जो है--

बहुत सारे कैटेगरी के कपड़े रखे हुए हैं।

पिक्चर जो है कोई रेस्टोरेंट से लिया गया पिक्चर है.